बोर्ड भी लगे हैं कुछ आदमी भी आते-जाते दिखाई दे रहे हैं। ऊपर दोनों फ्लोर पे कांच लगा हुआ है और अ ऊपर आसमान भी दिखाई दे रहा है।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

और पीछे फोर व्हीलर भी है कार भी है और उसके पीछे बिल्डिंग है रोड दिखाई दे रहा है ।।

जो की उस पे एक आदमी है उस नाव पे रस्सी भी रखी हुई है आसमान दिखाई दे रहा है ।

उसमे एक बच्चा है जो की पाइप से पानी दे रहा है उन फूलो के पेड़ पे और नीचे जमीन दिखाई दे रही है वहाँ के मिट्टी भी हम देख पा रहे है ।

जिसपे एयरटेल लिखा हुआ है शॉप के बाहर साइड में एक बैंच लगी है और उसके बाहर एक आदमी है बगल में भी एक शॉप है जहाँ पे एक आदमी खड़ा हुआ है ।

और यहाँ से आसमान भी हमें अच्छे से दिखाई दे रहा है मंदिर के पीछे बड़े-बड़े पेड़ है जो की साफ दिखाई दे रहे है ।

अ-अ सामान सब रखा हुआ है | उसके पीछे एक आदमी खड़ा है | रोड भी है रोड के पे जमीन दिख रहा है मिट्टी भी दिख रही है